साइड में बैठने के व्यवस्था है और दो व्यक्ति और दिखाई दे रहे है। ऊपर दो पानी की टंकी--

साइड मे टंकी भी रखी हुई है और लाल कलर का खंबा है एक पेड़ भी है बीच मे और दीवार की तरफ उजाला दिख रहा है।

यहाँ एक गार्डन है जिसमे एक बच्ची खिलो खेल रही है साइड मे कुछ लोग बैठे हुए है।

फ्रूट टरबुज रखे हुए है बी रखी हुई है और सेफ रखे हुए है कुछ पीछे क्रेट्‌ भी रखी हुई है और पीछे भी एक दुकान दिख रही है।